यख फुणि कई सारी क्रैटे रखी छन क्रेटो त गढ़वाली माँ ढालू बोलंदा छन।

पुंगड़ू एक बहोत बड़ू माछु रख्युं च।